और भी कुछ पोलिथीन नजर आ रहीं है कुछ जमीन मे रखी हुई दिखाई दे रही तो और व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

अस्पताल दिख रही है। अस्पताल के पास बहुत सारे पेड़-पौधे अस्पताल के पास लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ कुछ मुझे अ लगी हुई दिखाई दे रही है और बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे है फेन दिखाई दे रहा है।

ये बहुत से वाहन नजर आ रहे हैं ऑटो कार दिख रही है और मोटरसाइकिल नजर आ रही है बहुत से बच्चे दिख रहे हैं।

ये बहुत से वाहन नजर आ रहे हैं ऑटो कार दिख रही है और मोटरसाइकिल नजर आ रही है बहुत से बच्चे दिख रहे हैं। बोहोत से वाहन नजर आ रहे है पुल नजर आ रहा है पुल के पास दो पैड दिख रहा है और दो और दिख रहा है उसमे कुछ फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कुछ तिरंगे रखे दिख रहैं है और यह मूर्ति दिखाई दे रही है और फोटो लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे कुछ लोग व्हाइट कलर के कपड़े पेहने हुए हैं।

और माइक में कुछ बोलते हुए नजर आ रहैं है और कालीन बिछी हुई रेड कलर की दिख रही है और चैर नजर आ रही है एक व्यक्ति चैर मे बैठा --